जहाँ टी कॉफ़ी सौ सूप शॉप सोडा --

और उसके आस-पास बड़े-बड़े पत्थर और पेड़ लगे हैं और ऊपर आसमान है।

और अंकल ने सफेद कलर की चेक की शर्ट और नीली जीन्स पहनी --

और बहोत सारे पुतले बने हुए हैं |

बाइक खड़ी है टेबल रखी हुई है।

छोटी बड़ी सारी मछलियाँ हैं।

और तर तरबूज भी है आसपास और भी ठेले हैं।